दे रहा हैकपड़े रखे दिखाई दे रहा है पाटिया देखे दे रहा है।

एक दीवाल दिखाई दे रहा है दीवाल में वाइट कलर की पट्टी बनाई देखे दे रहा है कुछ पन्नियां राखी दिखाई दे रहे है कुछ कपडे पन्नी के नादर रखे हुए दिखाई दे रहे है ।

मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन के बीचों बीच आ रोड दिखाई दे रहा है रोड सीमेंट दिखाई दे रहा है।

साइड में एक दे रहा है मुझे कुछ और खिलौने को नहीं दिखाई दे रहे हैं।